अन अनाज पूरा इंस्टीट्यूट आफ लॉ बाहर एक डस्टबिन दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में कुछ पेड़ दिखाई दे रहें हैं। गाय दिखाई दे रहीं हैं कुछ गाय का रंग सफेद हैं कुछ का रंग काला हैं।

और दूर दूर तक जंगल ही दिखाई दे रहा है फोटो --

बड़े वाले मैगी के पैकेट रखे हुए हैं एटी टू रूपीस लिखा हुआ है।

एक एच_पी का लैपटॉप दिखाई दे रहा है।

और पीछे वॉटर प्यूरीफायर नजर आ रहा है।

आगे भगवान सभी भगवानों की मूर्तियां लगी हुई हैं।

सामने एक मंदिर नजर आ रहा है।

बुक टेप लिखा है एक पे फ्रूट अर्थ हीना नजर आ रहा है।

उसने पिंक कलर की साड़ी पहनी है।

कुछ यहां पर पेड़ नजर आ रहे हैं।

और कुछ यहां पर पौधे भी नजर आ रहे हैं।

जो नीचे है टाइले लगी हुई दिखाई दे रही--

इस फोटो में सामने काफी सारी बोतले नजर आ रही हैं।

सामने लिखा हुआ है जे_के सुपर सीमेंट --

तुम्हें का समय हमें दिखाई दे रहा है।

और कुछ बच्चे और कुछ औरतें भी दिखाई दे रही हैं।

और यहां पर कुछ बाल्टिया भी रखी हुई हैं।

पंखे का रंग है ब्राउन और ऊपर व्हाइट पेंट हैं।

और ईटों से बनी हुई दीवार दिखाई दे रही है।

इस फोटो में एक सफेद रंग का घोड़ा दिखाई दे रहा है।

बाहर एक बाइक भी खड़ी हुई है।

बगल मे एक लड़की बैठी हुई है जिसने पीले रंग का टॉप पहना हुआ है।

स्विच बोर्ड दिखाई दे रहा है।

और एक अंकल दिखाई दे रहे हैं जो फोटो ले रहे हैं शीशे से--

कुछ स्टूल भी बाहर रखे हुए हैं।

इस फोटो में सामने पूरी डेकोरेशन दिखाई दे रही है।

और ये दिन का समय है और आसपास रोशनी है।

इस फोटो में जो है एक स्विमिंग पूल है।